एक लाइट जल रही है कुछ चार सिलिंग्स दिख रही है।

एक फैन दिख रहा है लवे का पाइप है।

यह एक बहोत ही बड़ी कंपनी है।

यह एक रास्ता है इस रास्ते के पास एक कार दिख रही है।

यह एक कंप्यूटर सेंटर है।

यह एक रेस्टोरेंट है। इस रेस्टोरेंट के पास कुछ बैलून लगे हुए हैं।

जो कि अलग अलग रंग के हैं कुछ एसीयां लग रही है।

एक व्यक्ति दिख रहा है जोकि बाइक को सुधार रहा है।

एक टावर दिख रहा है बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं।

इस सोफे के ऊपर पन्नी चढ़ी हुई है और कुछ बटन से लगे हुए हैं।

इसके पास दो तकिए धरे हुए हैं एक हरे कलर का पेड़ धरा हुआ है।

यह एक इमरजेंसी हॉस्पिटल है जिसके पास एक कुर्सी धरी हुई है।

यह एक लकड़ी का डिजाइन है।

और आस पास कुछ पेड़ पौधे दिख रहे हैं कुछ बाईकें दिख रही है।

इस शोरूम में कुछ गुब्बारे लगे हुए है।

कुछ व्यक्ति है जो कि अपना वर्क कर रहे हैं कुछ लाइटें जल रही है नीचे पत्थर लगा हुआ है।

कुछ लाइटे जल रही हैं पीछे पीला कलर हुआ हुआ है।

और पेपर रेड कलर और वाइट कलर हुआ है एक कुर्सी रखी हुई है।

इसके पास कुछ लाइटें जल रही है कुछ पेड़ पौधे दिख रहे हैं।

केबील हो गए एक ब्लैक कलर की रस्सी दिख रही है पतली सी और सामान--

नीचे टाइल लगी हुई है और इन्हीं के पास कुछ बैग है।

कुछ तार दिख रहे हैं कुछ गलत दिख रहा है दीवार पर जो की अलग अलग रंग का है।

यह एक शॉप है इस शॉप के अंदर कुछ सामान दिखा रहा है जैसे माला टंगी हुई है कुछ तस्वीरें लगी हुई है।

कुछ व्यक्ति दिख रहे हैं कुछ दुकानें लगी हुई है।

एक गैस की नाल दिख रही है और गैस का चूल्हा दिख रहा है कुछ डिब्बे दिख रहे है।

जो की जले हुए हैं और इसके पीछे दीवाल पर वाइट कलर का पेंट हुआ है।

एक व्यक्ति दिख रहा है और एक बाइक पर दिख रहा है कुछ तार दिख रहे हैं।